सामने में बड़ासा रोड नजर आ रहा है यहां पे एक सोसाइटी है सोसाइटी में बहोत सी बिल्डिंग नजर आ रहे हैं।

यहाँ पे खालसा मेडिकल है यह शोपन का डोर ओपन है यहाँ पे हर प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं।

चिड़ियाँ नजर आ रही हैं चिड़ियों का रंग हरा है काला है सफेद है।

कुछ पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं बड़े-बड़े से कुछ कुर्सियाँ पड़ी हैं कुछ टेबल पड़े हैं गाड़ी पार्क की हुई हैं।

सामने में गैराज नजर आ रहा है --

सामने में एक रूम नजर आ रहा है उसके बीच में एक और कैबिन बना हुआ है यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है फ्रिज के ऊपर गिलास रखा हुआ है।

यहाँ पे टेबल लगा हुआ है छोटी-छोटी कुर्सियाँ लगी हुई हैं तीन उसके साथ में दीवारों पे पोस्टर लगे हुए हैं।

उसके ऊपर परफेक्ट लिखा हुआ है उसपे ऑरेंज कलर की डिजाइनिंग दी हुई है।

कॉर्नर यहां पे कुछ फूड आइटम शो की गई है।

उसमें उन्होंने चौरस डिब्बे बना रखे हैं कुछ बच्चे इसपे ऊपर चढ़ के खेल रहे हैं मस्ती कर रहे हैं कुछ घास नजर आ रही है।

सामने में एक रोड नजर आ रहा है गोड रोड पे बहुत सी गाड़ियां नजर आ रही हैं यहां पे बाइक खड़ी हैं।

सामने में एक हॉस्पिटल नजर आ रहा हैं हॉस्पिटल पे यहाँ पे सामने में बोर्ड नजर आयी यहाँ पे लिखा हुवा हैं स--

यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं आपने सिरजना ।

सामने में कुछ शॉप नजर आ रही हैं शॉप ओपन हैं यहाँ पे ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं कोका कोला के।

सामने में एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है यह रेस्टोरेंट नहीं यहाँ पे डांस फ्लोर लगा हुआ है यहाँ पे फ्लोर पे रंग बिरंगी लाइटें नजर आ रही हैं।

कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे कुछ लोग स्कूटी पे जा रहे हैं ऑटो जा रहा है।

लगे हुए हैं उसमें सेब नजर आ रहे हैं केले नजर आ रहे हैं अनार नजर आ--

सामने में एक गार्डन नजर आ रहा है यह गार्डन बहुत बड़ा नजर आ रहा है यहाँ पे कुछ पेड़-पौधे लगे हुए हैं बड़े-बड़े।

गार्डन में हरी हरी घास लगी है पीछे में एक घर है यहां पे कुछ झूले लगे हुए हैं।

सामने में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे लोहे के सरिए नजर आ रहे हैं सीमेंट का काम चल रहा है।

येलो कलर का उसपे उम् पीले रंग की लाइट नजर आ रही है।

यहाँ पे पीले रंग के पाइप लगे हुए हैं और फ्लोर का कलर क्रीम है ब्राउन है।

सामने में एक रोड नजर आ रहा है रोड पे कुछ गाड़ियाँ नजर आ रही हैं फ्लाईओवर है यहाँ पे गाड़ी पार्क की गई है।

यहाँ पे सिल्वर कलर की गाड़ी पार्क की गई है जिसका नंबर पी_ बी_ नजर आ रहा है जी सेवेन नजर आ रहा है।

सामने में मैदान नजर आ रहा है यहां से बहोत से खिलाड़ी खेल रहे है एक स्टेडियम है स्टेडियम में साइड में--

रथ पे डाउन सीलिंग में सिल्वर कलर की लाइट नजर आ रही है वाइट के कपड़े रैक में रखे हुए हैं रंग बरंगे।

एक ऑटो नजर आ रहा है उसका कलर ग्रीन है और यलो है।

इधर-उधर चल रहे हैं कुछ बाइक खड़ी हैं कुछ स्कूटी खड़ी हुई हैं यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है एंट्री पे उस पे एच_ डी_ एफ_ सी बैंक लिखा हुआ है।

सामने में एक रूम नजर आ रहा है यह एक किचन है किचन में दो गैस लगे हुए हैं माइक्रोवेव पड़ा है मिक्सी पड़ी है।

कैबिनेट के ऊपर में कुछ सामान नजर आ रहा है रखा हुआ अंदर में।

सामने में एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग के बाहर में बहुत सी अ गाड़ियां पार्क हैं यह एक सरकारी बिल्डिंग है।

पिल्लर खड़े किए हैं उन पर रानी कलर का प्रयोग किया गया है जमीन पर ग्रीन कलर का कार्पेट बिछा रखा है कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे लोगों की भीड़ नजर आ रही।

सामने में एक रूम नजर आ रहा है बड़ा सा यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे सोलर --

सामने में एक मैदान नजर आ रहा है मैदान में बड़े-बड़े गोल पाइप रखे गए हैं जिनका कलर सिल्वर है ए--

सामने में एक सोसाइटी नजर आ रही है सोसाइटी में बहोत पुराने मोकान हैं।